बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं यहां पे बड़ी बिल्डिंग है तीन मंजिल बिल्डिंग है ये यहां पे देख सकते हो।

लाइट लगी हुई है और यहां पे यहां पे बहुत से आदमी बैठे हुए है यहां मेज भी है कुर्सी भी है।

यहां पे मछली मछलीयां पड़ी हुई है मछलियों का रंग बहोत अलग अलग रंगों की मछलियां पड़ी हुई यहां पे--

यहां पे आप बुक देख रहे हो यहां पे बुक ही बुक रखी हुई है यहां पे --

और यहां पे मतलब ब्लैक कलर की कुर्सी रखी हुई है यह आप देख सकते जो यहां पे ब्लू कलर भी दिख रहा हल्का हल्का।

यहां पे देखने में बहुत-अच्छा लग रहा है और यहां पे आप देख सकते हो लाइट किधर बन्द है हर तरह की अच्छी-अच्छी चीज़ दिख रही यहां पे --

है आप यहां पे देख सकते हो यहां पे पंखे लगे हुए हैं।

एक आदमी ने एक अपने हाथ मे प्रेस ले रखा है इस आदमी ने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है एक लुगाई ने ब्ल्यू कलर की साड़ी बां--

यहां पे आप देख सकते हो हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर बहोत अच्छे अच्छे--

एक लड़का खड़ा हुआ है ये अ इधर से उधर जा रहा है।